यह एक बुक शॉप लग रहा है ऊपर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है।

किसी स्कूल में प्रेयर हो रहा है टीचर और बच्चे अ प्रेयर कर रहे है।

सभी मजदूर लोगों ढलाई का काम कर रहे हैं आधा ढलाई का काम हुआ है अभी।

हां दोनों पैर पानी में डूबा कर गर्मी के समय में कितना ठंडा लग रहा होगा और कितना अच्छा लग रहा।